उपर मे पंखा भी लगा हुआ है।

इसमें एक एंबुलेंस खड़ी हुई--

उसके आगे कुछ फू पेड़ लगे हुए हैं।

पीछे की ओर भी पेड़ लगे हुए --

जिसमें लीड और चार्जर भी मिलते हैं।

और एक पंखा भी लता हुआ है।

ऊपर कुछ लाइटे भी दिखाई दे रही है।

और एक स्टूल भी दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक पेंटिंग भी दिखाई दे रही है।

के मुंह पर भी बलर लगा हुआ है।

जो कि एक पेंटिंग बना रही है।

यहां पर पेले रंग के बक्से में मच्छी --

पीछे की ओर एक छतरी है ली।

बोर्ड के ऊपर एक ब्लर लगा हुआ है।

जिसमें पेंट की बाल्टियां मिलती है।

जिसमें कुछ लेडीज़ और कुछ जेंट्स बैठे हुए हैं।

यहां पर गाड़ियों की सर्विस होती है।

और कुछ तस्वीर भी लगी हुई है और एक भगवान की तस्वीर भी रखी हुई है।

और एक छोटा सा घंटा भी लगा हुआ है।

नीचे हरे हरे घास भी खड़ी है।

और एक हेलमेट भी रखा है।

अंदर लिल्ले रंग के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं।

एक तौलिया भी पड़ा हुआ है।

और कोई गाड़ी भी खड़ी है।

बराबर में एक छोटे बच्चे का फोटो भी है अखबार पर।

यह एक दुकान है जिसमें शैंपू सरफ आदि सामान रखे हुए हैं।

और कुछ लाइटें भी है और एक कुर्सी भी बिछी हुई है और एक जंगला भी है।

एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

दो एल_ई_डी एल_ई_डी भी लगी हुई है और एक एल_इ_डी चल रही है और --

कुछ टैंक भी रखे हुए हैं और --

इसमें दो आदमी हैं और उनके मुंह पर ब्लर लगा हुआ है।

इस तस्वीर में यहां कुछ फंक्शन हो रहा है।